यहाँ मुझे कुछ अ जामुन दिखाई दे रहे है बहुत सारे जामुन रखे हुए है जो कि कुछ अलग से है और कुछ गुछे-गुछे में भी दिखाई दे रहे है।

व्हाइट कलर के लाइट से डेको --